फल एवं ड्राई फ्रूट्स कॉर्नर लिखा हुआ है।

अ समस्तीपुर सेंट्रल स्कूल लिखा हुवा है उसके ऊपर।

जिसके पास में गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय लिखा हुआ है।

रोड के ऊपर से एक ऑटो रिक्शा जाते हुए दिख रही है।

इसके सामने अ स्टील की रैलिंग दिख रही है।

कुछ जीन्स अ कुछ सलवार कमीज दिख रही है।

इसके सामने बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून लिखा हुआ है।

आदमी सनग्लास पेहने हुए है।

यहाँ पर मुझे एक भगवान की मूर्ति दिख रही है।

चारों अ के चारों दौड़ रही हैं।